इधर जो साइड में कुछ दीवार है दीवार के ऊपर खिड़कियां लगी हुई है खिड़कियों के ऊपर परदे लगे हुए है।

और नीचे कुछ मोटरसाइकिले स्कूटी खड़ी है।

और बेंच पड़ी है बेंच के ऊपर दरियां बिछी हुई है बाहर कुछ पौधे लगे हुए हैं गमलों के अंदर।

और कुछ लड़कियां भी बैठी हैं पीछे बेंच लगी हुईं हैं बेंच के ऊपर एक कागज पड़ा है और कीबोर्ड लगा हुआ है।

इस तस्वीर के अंदर यहां पर सामने एक दुकान है दुकान के अंदर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर सामने एक बहुत ही बड़ा रूम है रूम के अंदर सामने दीवार के ऊपर वीवो लिखा हुआ है।

इधर साइड एक कुर्सी पड़ी है ब्लैक कलर की पीछे एक साउंड पड़ा है उसके ऊपर एक हैंपर पड़ा है।

चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है बजरंग बोथ एंड सेनेटरी नीचे दो टंकिया पड़ी है सफेद कलर की।

इस फोटो के अंदर सामने कुछ प्रोग्राम है बाहर एक आदमी खड़ा है अंदर की साइड दरी बिछाई हुई है ग्रीन कलर की।